एक नदी है और यह नदी बहुत ही बड़ी है और इस नदी में --

और यह ग्राउंड बोहोत ही बड़ा है। इस ग्राउंड में बोहोत सारे लोग आते है। खेलने यहाँ पे--

यह एक टोटो रिक्शा हैं और यहाँ पे --